इसके बिच में स्पेस है पार्किंग स्पेस है।

सामने एलजी के एलजी कंपनी के एलइडी रखे हुए है अलग अलग साइज सब रो वाइज जमे हुए हैं।